अगल-बगल अगल-बगल घर भी है और गाछ-वृक्ष भी हरा-भरा है।

आ पीछे भी गमछा रुमाल पलस्तर है नीचे में और काला कलर का शर्ट पहना है और काला का जीन्स है।

यहाँ पे पहाड़ है यहाँ पे गर्ल्स और बॉय एक्सरसाइज कर रहे है अगल-बगल में पहाड़ है उसके बीच में गर्ल्स और बॉय है गर्ल्स टी-शर्ट पहने है और नीचे में जीन्स और टोपी लगाए है व्हाइट कलर का |